और पेड़ ओड़ भी दिख रहा है और बस के साइड साइड में खिड़की लगा हुआ हैं।

ये एक चाय की दुकान है यहां पे सामने काउंटर बनाया गया है उसके सामने पोस्टर लगा हुआ है।

और बहोत सारा लोकंड का पटरी रक्खा गया है और नीचे साइड में बहोत हरे-हरे घास हैं।

यहां पे साइड साइड में बाउंड्री मारा गया है और बाउंड्री के अंदर एक पिलर से टाइप का--

एक बहोत बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग पे बहोत सारे कांच ओंच लगाए गए हैं जाली लगा हुआ--